यह सफेद रंग की है और कुछ गमले में पेड़ पौधे रखे हुए--

नीचे कुछ जूतियां दिखाई दे रही हैं।

गेट पर कुछ लाल पीले गुब्बाडे लगे हुए हैं।

जहां पर नीचे टाइल्स लगी हुई हैं तथा उसके बीच में कुछ आकर्षण--

शॉपकीपर सफाई कर रहा है।

कुछ जूते और बर्तन भी रखे गए हैं।

यह हनुमानगढ़ी का मंदिर है जिसका गेट सफेद--

दुका अ मंदिर के गेट के सामने मधुरम ओम प्रसाद की दुकान --

फ्लाई ओवर दिखाई दे रहा हैं।

पार्क के अं अंदर कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

इसके बगल में एक प्रदूषण जांच केंद्र है औ--

और कारों की सर्विसिंग की जाती है।

जहां पे कुछ किताब कापियां पेन रखी हुई हैं।

यह टेबल पर एक बॉटल और गिलास रखे हुए।

यहां उनका इस चिह्न दिखाई दे रहा--

वहां पर ए एक पेड़ कई पेड़ पौधे है।

यह एक शॉपिंग मॉल है।

और कई लोग आकर सब्जियां खरीद रहे हैं।

दो दुकानें हैं एक ए स्टोर अप इंडिया और एक जावेद हबीब हेयर ब्यूटी है।

था उसके सामने कुछ व्यक्ति और महिलाएं तथा बच्चे--

है तथा उसके बगल में एक खेत है तथा पीछे कुछ कुछ वृक्ष दिखाई दे --

गेट पर एक व कोई व्यक्ति बैठा है तथा कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ हैं यह एक हॉस्पिटल है।

यह एक स्विमिंग पूल है जहां पे खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए स्विमिंग बना हुआ है।

पड़ी हुई हैं यह पोस्ट ऑफिस सफेद रंग से पेंट किया हुआ है जिसके सामने एक--